काफी खर्च करके ये घर बनाया गया है| देखने पे अति सुन्दर। ये तो हॉस्पिटल टाईप का लग रहा है।

और ऐसा लगता है कि बीच में अ झंडोतोलन का काम हो रहा है काम होगा। काफी अच्छा मनोरम दृश्य है। देखने में बहोत ही सुन्दर लगता है बहोत ही सुन्दर।

यहाँ पे खेत यहाँ पे जालासे हे पेड़ पोधे छोटे छोटे हे जिन की छाया यहाँ पे लग रही हैं।

अ काफी सुन्दर ये पेड़ है और खाफी सुन्दरता को बिखेरते हुआ जगह काफी मजेदार जगह मालूम पड़ रहा है।

यह काफी अच्छा-सा सुन्दर सा दृश्य है और प्रकीर्ति की सुन्दर को बिखेरता हुवा यह एक बहुत ही सुंदर पर्वतशृंख्लाए पर्द्षित किये हुयी है।